आसपास पेड़ों का गुच्छाल है काफी सारा।

एक टीप आ चुन की दुकान खोल रखी एक ठेला लगा के खड़ा हुआ है ।

आ हीरो वन्ना अ बी.एस.इ. गैंग पोलो साइकल्स यहाँ पे काफी सारी साइकल्स खड़ी हुई है ।

इस इमेजेस मे एक हॉल है जहाँ पे आ डांस प्रोग्राम चल रहे है।

इस इमेजस मे एक टेबल आ लगी हुई है टेबल और चेयर --

इस जगह में एक लिंटर का काम चल रहा है जहाँ पे काफी सारे मिस्त्री के लोग खड़े हुए हैं।

एक लेडिस भी वहाँ पे खड़ी हुई है एक येलो कलर का यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है जिसका सीट टी-शर्ट आपको दिख रहा --

और एक ने ब्लू कलर की टी-शर्ट और ब्लू कलर का पैंट पहना है जिसमें फ फाइफ लिखा --

अंग्रेजी बोलना सस सीखे स्त्री सेवा उपलब्ध है।

इस जगह मे यहाँ पे आप जिम एक्टिविटीज का सामान देख सकते है ऊपर पंखा चल रहा है।

और यहाँ पे दो लेडिज है जो घूँघट मे है।

एक आदमी सभी पर्सन्स को समझा रहा है काम।

टाइमिंग सेटिंग्स है यहाँ पे और दो लड़की टीम्स है एक लड़की है।

जिसमे आप देख सकते है कि एक शोरूम है जहाँ पे काफी सारी --